जो कि कृष्ण भगवान की है।

सामने सैलून है। जिसका पीला कलर हैं और उसके बोर्ड पे लिखा है न्यू ताज हेयर सैलून ।

और बहार कुछ लोग खड़े हुए हैं औ होटल में बोहोत सारी लाइट दिख रही है। ऊपर कटेन्स डले हुए हैं।

एक डेकोरेशन कर रहे हैं। सामने फूल लगा रहा है एक बंदा।

औ अंद की सारी लाइट जल रही है। वाशिंग दिख रही है और एक कुर्सी और टेबल भी है।

यहाँ बहुत सारी सिंक दिख रहीं हैं किचन की एक फ्लशर बॉक्स दिख रहा है।

बहुत गंदगी बड़ी है साइड में। ये गेट है खुला हुआ दिख रहा है।

ये एक पेट्रोल पंप है। सामने पेट्रोल पंप के लिए लोग खड़े हुए हैं पेट्रोल डलवाने। कुछ लोग बाइक पे है कुछ लोग पैदल खड़े हुए हैं।

और बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं। घास है बहुत सारी।

और सामने बोहोत सारी लाइट जल रही है पटाखों से।

यहाँ बोहोत सारे लोग ढ़ोल ले के जा रहे हैं।